एल_एम_एल अर_एक्स हंड्रेड के_बी हंड्रेड सुजुकी --

बीच में टोकरियां और प्लेटे सजी हुईं हैं मंदिर में मूर्ती दिख रही है।

यहाँ बड़ा सा जंगल दिख रहा है जिसके रोड कच्चा दिख रहा है बोहत से लोग--

बड़े-बड़े तम्बू और बड़े-बड़े खम्भे लाइट के दिख रहे है आसमान दिख रहा है।

ये पेरेंट्स प्राइड स्कूल का बोर्ड लगा दिख रहा हैं।

यहाँ रोड दिख रहा हे एक ताँगे वाला दिख रहा हे जीप और बहुत सी कार खड़ी हुई दिख रही हे ।